घर के भीतरी भाग को जाने के लिए ढेर सारी सीरिया भी है।

तस्वीर में एक पेट्रोल पम्प के दृश्य दिखाए गए है।

तस्वीर में आस पास बहौत सारे पेड़ पौधे भी है।

दुकान के ऊपर सुधा पार्लर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

बगीसे में बहुत सारे पेड़ पौधे है।

इस तज़्वीर में एक मार्केट का दृश्य दिखाए गए हैं।

इस तस्वीर में अभी दिन का समय हो रहा है।

इस तस्वीर में एक घर की भीतरी भाग को दिखाए गए हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे पक्षियों का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक घर के भीतरी भाग को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक गामूसाभी दिख रहा है।

गेट के सामने बहुत सारे सीढ़ियां भी दिख रहा है।

इस तस्वीर मे अभी दिन का समय हो रहा है।

इस तस्वीर में एक घर के भीतरी भाग को दिखाया गया है।

टेबल पर एक कप दो प्लेट और एक कटोरी भी देख रहा है।

इस तस्वीर में एक लाइट का पोस्ट भी दिख रहा है।

बाई तरफ एक काले रंग का तुल भी है।

घर के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे भी देख रहा है।

इस तस्वीर में खुली आसमान भी दीख रहा है।

तस्वीर में एक सफ़ेद रंग का घर भी दिख रहा है।

तस्वीर में खुली असमान दिख रहा है।

तस्वीर में एक मूर्ति भी दिख रहा है।